यहाँ दिखाई दे रहा है नाव लगा हुआ है नाव में लिखा है इंडिया और हुलु पिला कलर का नाव --

देखने में एक आदमी दीया जला रहा है। नीचे बोहोत फूल का माला दिया हुआ है।

ये एक ठो बुक का स्टोल है।

ये लगता है छोटा एक ठो शास्त केंद्र है।

ये जिम का घर है। एक आदमी जिम कर रहा है।